यह दूकान है दुकान बहुत सुंदर है बहुत बड़ा है इसमें रेक सब सजाया गया है देखने में अच्छा लग रहा है बहुत सुंदर लग रहा है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सामान सब ।

पूजा की सामान है एक बत्ती भी जल रहा है जो पंडी जी लग रहे हैं यहाँ बच्चा सब है बच्चा सब बेग लटकाया हैं स्कूल से आया है टीका लगा रहे --

यह पनिया जहाज पे ही खाली दिख रहा है।

इसमें बहोत बरा मोर है। मोर पंख फैलाया है। ये नाच रहा है दिखने में बहोत सुंदर है यह मोर --

बहोत सारा आदमी खड़े है वो सब बैंक के पास खड़े हैं एक आदमी कागज देख रहे हैं

केला का पेड़ दिख रहा है ट्रक का डब्बा दिख रहा है आसमान भी दिख रहा है दिखने मे अच्छा --

लाइन में लगे हुए हैं सावधान हैं वहां पर लग रहा है पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी को झंडा फहराया --

यह सैलून है सैलून बहोत सुन्दर है देखने में अच्छा लग रहा है। एक आदमी मशीन से बाल काट रहा है एक आदमी कटवा रहा है डिज़ाइन वाला बाल कटवा रहा है।

यह टेबल है टेबल बहोत सुन्दर है छोटा भी है बड़ा भी है कई कलर का भी है नए डिज़ाइन का टेबल है दिखने में अच्छा लग रहा है रोड है।